ट्रक खड़ा है। जोकि ब्राउन कलर का है और ब्लू कलर का और उसके बगल में एक और ट्रक खड़ा है ।

लाइन से बना हुआ है दो बिल्डिंगे नजर आ रही है।

मछली का बाजार है। बोहोत बड़ी मछली यहाँ पर रखी हुई है और छोटी-छोटी मछलियाँ भी है बोहोत सारे लोग भी नजर आ रहे है यहाँ पर।

और बोहोत सारे फूलो से सजाया गया है। कुछ लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पर।

बोहोत ही सुंदर लग रहा है देखने मे मंदिर का कलर वाइट और लाल कलर का है ।

बिल्डिंग है और दो मंजिला है। यहाँ पर कलर जो है इसका --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा लग रहा है कि यह कोई कॉलेज --

बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और यहां पर मशीन है ए.टी.एम. का।